साइड में काफी छोटे-छोटे घर हैं और उसके ऊपर में दो टॉवर हैं।

काफी सारे बंदे खड़े हुए हैं आगे में और काफी सारी बाइकें है और एक साइड में व्हाइट कलर का घर है और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है।

सामने एक घर है घर के बीच में एक टॉवर लगा हुआ है टॉवर के ऊपर एक इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है और अगल-बगल काफी सारे पेड़ है।

सामने एक छोटा सा गार्डन है उसके अंदर काफी ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए काफी बंदे बैठे हुए है।

सामने में एक बोहोत बड़ा सा एक मंदिर बना हुआ है। उसके पीछे में काफी बड़े-बड़े पेड़ है और उसके फ्रंट में दो लड़का एक लडकी खड़े हए है।

सामने कुछ प्रोग्राम हो रहा है उसके ऊपर में काफी रेड कलर के लाइट लगे हुए है और नीचे बन्दे बैठे हुए है और आसमान भी थोड़ा दिख रहा है।

इसका कलर येलो है और येलो कलर की बिल्डिंग के बगल में पिंक कलर का बिल्डिंग है और उसके पीछे एक वाइट कलर का बिल्डिंग है उसके पीछे भी काफी बड़े-बड़े पेड़ हैं।

और पीछे में येल्लो कलर का बिल्डिंग है और सामने में ब्लू कलर का गेट दिख रहा है और बगल में हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं और आगे एक आदमी जैसा कुछ बना हुआ है।